इस क्षेत्र में एक थाने की बाहर की तस्वीर दिखाई गई है।

एक बिबलीफोलीया की बोर्ड लगी हुई है।

सीलिंग पे लाइट जल रहे हैं मरकरी लगी हुई है।

चित्र मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस बिल्डिंग के ऊपर अंगेठे लिखे हुए हैं।

एक भी आइसक्रीम की बैनर दिखाई दे रही है।

एक बहुत बड़ी ऑक्सफोर्ड बुक हाउस की पोस्टर लगी हुई है।

कार खड़ी है जहां पे एक इलेक्ट्रिक बोर्ड दिख रहा है।

एक काउंटर बनी हुई है एक चेयर रखी हुई है जो की प्लास्टिक की है एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे सामान रखे हुए हैं जैसे हॉर्लिक्स के पैकेट्स चॉकलेट्स ब्रेड के पैकेट्स और भी बहुत सी चीजें।

उसने लाल कलर की शूज काले कलर की पैंट पहनी हुई है और इस स्काई कलर की शर्ट पहनी हुई है।

बाजार दिखाई दे रहा है जो की मछली बाजार है।

दो लैंप लगे हुए हैं एक बड़ी पोस्टर लगी हुई है जिस पे कुल्फी इंडिया लिखकर हिस्ट्री डिड यू नो इंग्रेडिएंट्स और व्हाट सब्जेक्ट बने हुए हैं।

जिनके छत पे पानी की सिंटेक्स रखी--

बेडशीट बिछाई हुई है और दो कंबल रखे हुए हैं।

छोटे छोटे वेयरहाउसेस बने हुए हैं।

एक हॉटपॉट का डब्बा रखा हुआ है कुछ प्लेट्स रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक बाइक की शोरूम दिखाई गई है।

छोटों गमलों में बहुत सारे फ्लावर के पौधे लगाए गए हैं।

सीलिंग पे फैन लगे हुए हैं बहोत सारे व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इर्द गिर्द चेयर रखे हुए हैं जिस चेयर पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस क्षेत्र में एक एंपोरियम का चित्र दिखाया गया है।

बहुत सारे मैट बिछे हुए हैं उन मैट के ऊपर बहुत सारे महिला और पुरुष बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस गार्डन के बीचो बीच एक फाउंटेन एरिया बनाया हुआ है।

टिशू पेपर रखी हुई है यहां रेड कलर के हाथ वाले बनूं से डेकोरेशन की हुई है।

इसके बाहर श्री द्वारिकेयधीश वस्त्रालय लिखकर बड़ी सी बैनर लगी हुई है।

इसके बाहर बहुत सारी चेयर लगी हुई है।